व्हाइट एक काले कलर का ऊपर छत मे--

सामने दो बिल्डिंग भी खड़ी हुई है| बिल्डिंग में बहुत अच्छे डिज़ाइन और साइड में एक रोड घर बन रहा है उसमें ताड़ का गेट लग रहा है | उसके पीछे --